बहुत हरियाली दिखाई दे राही है। ये देखने मे एक नंबर लग रहा --

नंबर प्लेटमे एम_एच एकतीस एफ_सी सेतालीस छत्तीस दिखाई दे रहा है नंबर प्लेटमे यहापर हमको बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहा है यह देखने मे हमें बहुत अच्छा लग रहा है।

बहुत अच्छा लग रहा है इस इमेज मे सायकल दिखाई दे रही है ये दिखने मे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है।

इमेज मे हमे भोकाड इस्टेट साऊथ इंडियन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है एक रेस्टोरन्ट जैसा दिखाई दे रहा हैं। इसमे एक स्कूटी खड़ी--

हमे पार्किंग जैसी दिखिई दे रही है जिसमे ये नीले कलर की शर्ट और ब्लाक पॅन्ट पहने हुए बेल्ट पहने हुए एक अ पोछा लगा रहा है इसमे एक मास्क लगाए हुए खड़ा हुआ है।

अल्टो गाड़ी दिखाई दे रही है खंबे दिखाई दे रहे है यहा पर हमको एक गद्दी दिखाई दे रही है यहा पर हमको चार खंबे दिखाई दे रही है यहा पर व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये देखने मे बोहत अच्छा लग रहा है।